यहां पे आप देख सकते हो ऊपर आसमान दिख रहा है ये यहां पे--

यहां पे आप देख सकते है ये यहां पे पानी की टंकी बना रखी है और यह पे--

टैंकर भी खड़ा हुआ है टेंपो खड़ा हुआ है।

दुकान सी है यहां पे टमाटर रखे हुए हैं गोभी रखी हुई है और यहां पे तीन तीन चार चार --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

लाइट लगी हुई है यहां पे एक बोर्ड है एक लिखा हुआ है ये।

मटके के ऊपर ग्लास हैं और यहां पे ये आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

यहां पे यह फ्रिज है यहां पे यह शिव शक्ति लिखा हुआ है फैमिली ढाबा लिखा हुआ है।

छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं इन गमले में पेड़ लगे हुए हैं।

अनाज मंडी लिखा हुआ--

और यहां पर आप देख सकते हो ये एक आदमी बैठा हुआ है यहां पर आधार लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हो।